यह एक रोट अं रोड सुनसान रोट है जहाँ एक गोल गोल टाइप का है।

और एक मोटर-साइकिल में एक आदमी लाल से कलर का बेग टांगे जा रहा है एक अ की एक बड़ा हाथ चारसो सात जा--

कुछ लाइट कुछ लैंप भी लगे हैं।

यह एक बहुत बड़ा है। यह एक बहुत बड़ा हेलिकाप्टर एण्ड प्लेन है।

और कुछ जेंट्स लोग जा रहे हैं। कुछ ट्राली जैसे नीली नीली कलर की जा रही --

यहाँ एक बहोत बड़ा तालाब है। यह एक बहुत बड़ा तालाब है जहाँं बहुत दूर तक फैला हुआ है और कुछ आ --